सामने एक बिल्डिंग है वह खाली पड़ी है।

इसकी दीवारें क्रीम कलर की हैं।

सामने एक कुआं है उसके पास छोटी-छोटी झाड़ियां है।

यह एक खुला एरिया है इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लगा है जो बिजली का लग रहा है।

एक शेड भी है उसके ऊपर एक लट्टू है।

साथ में ही एक और पिक्चर है।

एक आदमी डेकोरेशन कर रहा हैं।

इसपे कुछ पीली और काली पट्टियां हैं।

फल बहुत मीठी लग रही हैं।

सामने एक शीशे का गेट है गेट सफेद कलर का है एक पौड़ी बनी हुई है।

यह कमरा बहुत बड़ा है यह कमरा--